और फिलहाल इसे धोने के लिए खड़ा किया गया है और इस पर सर्फ़ का पानी डाला गया है।

यह एक चर्च है जो कि ईटाह के अंदर आता है।

इसलिए बनाया गया है ताकि लोंग नदी की एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से अपनी गडि़यों में जा सकें।

पेड़ पौधे हैं और इस तालाब को देखने अक्सर लोग आया करते हैं।

शुरू होने वाली है और यहाँ पर काफी मेहमानों के बैठने के लिए काफी कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं।

इस वजह से इस स्टेज को काफी सजाया गया है और काफी कुर्सियां भी मैदान में लगाई गई हैं।

यह एक पटाखे की दुकान है जहाँ पर बहोत सारे पटाखे मिलते हैं। इस पटाके की दुकान का नाम लकस्मि नारायण क्रेकर्स है।

यह एक बहुत बड़ा मैदान है जहां प एक फंक्शन चल रहा है जिसे हम --

और उस तालाब पर कुछ पौधे उगाये गए हैं इस पार्क पर काफी लोग घूमने व खेलने के लिए अक्सर आते हैं |